यहाँ बहोत सारा लोग है और बहोत सारा लोग गॉडफादर का भक्त है और गॉडफादर --

इट्ठो एक रास्ता है जो चारों तरफ टु बहोत बड़ा-बड़ा पेड़-पौधा है और ए एक ठो गेट लगा हुआ है और बीहड़ी का भी खुटा है और एक बहोत धुर--

दो सिग्नल लगा हुआ है और ये बैंक बहुत ही लंबा है और ये बैंक में बहुत बड़ा बड़ा खिड़की लगाया गया है और यह बैंक के सामने एक पोस्टर भी लगाया गया है और एक खुटा लगा हैं।